साइकल्स खड़ी हुई हैं | बाइक्स खड़ी हुई हैं | एक लड़का दिख रहा है |

इमेज में एक मैदान नज़र आ रहा है | मैदान में घास उगी हुई है | धूप की रौशनी पड़ रही है |

आ- कुछ पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं। पेड़ की पत्तियों का कलर हरा है। नीला आसमान दिख रहा है।

कांच में कस्टमर दिखाई दे रहा है | एक जेन्ट्स खड़ा है | उसने शर्ट और जीन्स पहनी है।

अ बिल्डिंग पर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर होटल इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है। दो येल्लो कलर की बस खड़ी हुई है। पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे है

इमेज में एक बिलडिंग नजर आ रही है | बिलडिंग के बोर्ड पर पिंड दुबई वेज --

आ पीछें की तरफ कुछ रेक्स बनी हुई दिख रही है। रेक्स में बहोत सारी किताबें रखी नज़र आ रही है।